घर बहुत ही बड़ा है यह पेड़ यह घर जो है वह सुनहरे रंग के पैंट किये हुए हैं इसके चारों तरफ बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

रहते हैं सभी कुछ खेल रहे हैं कुछ देख रहे हैं और लाइट्स लगाये हुए हैं यहाँ पूरा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा --